एक अ और बड़ा पेड़ है जिसके पास तीन आदमी चल रहे हैं।

रोड के दोनों तरफ से घास लगी हुई है।

एक बोट में एक आदमी बैठा हुआ है और किनारे पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक छोटी और लंबी इमारत है जिसका रंग सफेद है।

एक सोफे के सामने एक अ सफेद रंग का टेबल रखा हुआ है।

दरिया के आगे वाले किनारे पर एक बहुत बड़ी जमीन नजर आ रही है जिस पर घास लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप में बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

एक वॉलपेपर सब गास का है जिसमें बहोत सारे गास ल दिख रहे हैं।

इसमें एक तांगा जैसा है जिसके आगे चार घोड़े हैं और जिसमें श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं।

मशीन के बिल्कुल सामने एक ट्रैक्टर भी है और बहुत सारे पेड़ भी है।

दुकान में एक अलमारी भी है जिसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है।